यह एक दीवाल दिख रही है।

बिल्डिंग के सामने से रोड गया हुआ है।

आंध्र बैंक के एक्सिस बैंक के सामने से रोड गया हुआ है।

यहां छोटी लड़कियां बड़ी लड़कियां और लड़के भी दिख रहे हैं। यहां पर पंखे लगे हुए हैं।

ई-रिक्शा इलेक्ट्रिक से चलता है।

जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं।

और यहां पर बोहोत से झूले हैं जो कि बड़े छोटे सभी प्रकार के हैं।

यह एक कॉलेज का कैम्पस दिख रहा हैं।

यह फलवा ड्राई फ्रूट की शॉप है।

यह श्री राम आइसक्रीम और केक सेंटर है।

सामने से यह बंद दिख रहा है।

यहां एक ग्रोसरी शॉप दिख रही है।

जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे है यहां रैक में गारमेंट्स के डिब्बे रखे हुए हैं।

और यहाँ प्ले ग्राउंड में फिसल पट्टी लगी हुई है।